जहां उसके ऊपर येलो और वाइट कलर की बॉले रखी हैं।

और ब्लैक कलर का स्वेटर पहनी है।

ये एक पेट्रोल पंप है जहां पे एक ट्रक खड़ा है भारत पेट्रोलियम --

ये एक जीप जा रही है।

ये एक रोड बना है जहां पे--

सामने एक कार खड़ी है ग्रे कलर की।

यह एक फूलों की दुकान है जहां पे बहोत से फुल टंगे है।

ये गार्डन बना हुआ है जिसका गेट खुला हुआ है।

ग्लास जग राखे हुए हैं चटनियाँ रखी हैं।

और बहुत प्यारा डेकोरेट किया गया है गार्डन --

क्लोजर साल्स बना हुआ है का बोर्ड लगा है।

ये एक हॉस्पिटल बना है हॉस्पिटल की बिल्डिंग है।

एक टी_वी लगी है ऐ_सी भी लगा है वाइट कलर का।

ब्लू कलर का एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में कप है नेसकैफे का।

और साइड में घर भी बने है दो तीन।

और पीछे पेड़ बने हुए है एक बड़ा सा गार्डन है।

ये ग्रीन कलर की बेड ग्रीन कलर के शलवार कुर्ते में लेटी हैं।

सामने एक बिल्डिंग बनी है वाइट कलर की ।

क्लब है ये जिसमें लिखा है स्विमिंग पूल को-हे-फ़िजा क्लब ।

पानी फुल्की के पैकेट रखे हैं दाल चावल के पैकेट रखे हैं बिस्किट रखे हैं कोल्ड ड्रिंक रखी हैं।